सामने एक गमला भी रखा हुआ है जिसमें एक छोटा पौधा भी लगा हुआ है।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

इस तस्वीर में एक एस_बी_आई बैंक नजर आ रहा--

ठेले पर एक टब भी रखा हुआ है जिसके ऊपर नीले रंग की बोरी भी रखी हुई है।

सैलून के मेन गेट को शीशे के दरवाजे से बनाया गया--

तथा एक सामने की और पेड़ भी दिखाई दे रहा है जिसके सामने एक डस्टबिन भी रखी हुई है।

अंदर की ओर कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो गाड़ी का मरम्मत करते हुए नजर आ रहे है।

जहां पर काफी सारे फूड प्रोडक्ट लटके हुए एक तार पर लगे हुए हैं।